एक आदमी खड़ा हुआ है।

काफी सारे पेड़ लगे हुए हैं।

पेड़ों का रंग हरा है।

एक पेड़ दिख रहा है।

इस चित्र में हमें एक डॉक्टर दिख रहा है।

इस चित्र में हमें कुछ औरतें नजर आ रही है।

छट पहनी है हाथ में --

इस चित्र में हमें एक गेराज --

कुछ जा नमाजें बिछी हुई हैं।

लाल फूल नजर आ रहे हैं।

ये एक बेकरी बनी हुईं हैं।

इस चित्र में हमें एक टेबिल --

कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में हमें अलअमान रेस्टोरेंट दिख रहा है।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

लकड़ी की कुर्सी रखी हुई है।